बाजु में एक खिड़की लगाई जो की लोहै की है।

और एक चेयर है काले कलर की है एक शोकेस है जिसके ऊपर मशीन रखी गयी है जो की तौलने के लिए यूज़ की जाता है और एक काले कलर की चेयर भी हैं।

और सामने की ओर में कुछ लोग खड़े हुए है कुछ लोग लाइन में लगे हुए है कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे है और कुछ लेडीज भी है।

और कुछ टमाटर रखे गए है यहाँ पे एक लेडीज बैठी गयी देखने पे लग रहा है बेचने के लिए बैठी गई--

ऊपर की साइड में एक डोरी गयी है जो की लाइट की है सामने की ओर में रोड गया हुआ है जो की सीमेंटेड दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बेड है बेड काफी बड़ा है उसके ऊपर एक बिस्तर बिछाया गया है जो की सफ़ेद कलर का है।

आस पास में कुछ पेड़ भी है कुछ बड़े और कुछ छोटे पेड़ है।

इसमें खपड़े टाइप का बनाया गया है और देखने पे लग रहा है ये कोई वेयरहाउस है।

और ये पथरीली टाइप की बनाई गयी है।